देखना ता देखना बदिसी दे वह्ह्ह बहुत --

बाप रे इतना बड़ा गार्ड्रन इतना बड़ा ग्राउंड आदमी यहाँ त साला इंडिया का क्रिकेट खेलही।